व अदर स्टाफ के बैठने के लिए भी बहुत सी कुर्सियां व डेस्क बनी हुई है।

यहाँ पर एक पंडाल है इस पंडाल में बहुत से लाइट लगी हुई है।

सभी लोग जामुनों को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि यह बहुत स्वादिष्ट होते हैं।

यहाँ पर तीन बालिकाए खड़ी हुई है तीनों बालिकाए--

सभी लोग अपने-अपने अपने बस का इंतजार कर रहे है और यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं।

घूम रहे हैं और यहाँ पर और एयर क्राफ्टिंग के लिए भी बहुत से लोग--